छोटे छोटे पेड़ भी दिख रहे है पोस्टर भी लगा हुवा है बहुत सारे लोग दिख रहे है कुर्सी दिख रही है गमला दिख रहा है।

जिनको रस्सी से बांधा हुआ है पीछे पड़े दिख रहे है इधर आसमान दिख रहा है।

बहुत सारी बाइक्स दिख रही है कार दिख रही है पड़े हुवे है।

बहुत सारा पानी दिख रहा है जहाज दिख रहे है लोग रहे है छोटे-छोटे से कंकर भी दिख रहे है।

पर्दे दिख रहे है इधर एक पोस्टर लगा हुवा है जिस पर कुछ लिखा हुवा है।

ऐसी लग रहा है मिरर भी लग रहा है कुछ लोग भी दिख रहे है।